यहां से दो औरतें भी जाती हुई नजर आ रही है यहां पे स्कूल का काम भी च --

यहां पास ही में सोफा लगा है जिसपे एक काले कलर का--

तरह तरह की सजावट करी हुई दिखाई दे रही है।

चैनल गेट लगा हुआ नजर आ रहा है।

सभी के हाथ में एक थाली है और अगरबत्ती जली हुई दिखाई दे रही है सभी हाथ जोड़कर खड़ी हुई है।

ये किसी के बर्थडे की पार्टी दिखाई दे रही है यहां पर बहोत ही खूबसूरत --

कुछ टमाटर रखे हुए है कुछ चुकंदर रखी हुई है कुछ गाजर रखी हुई है और कुछ खीरा भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

एक मकान की फोटो दिखाई दे रही है जोकि एक बहुत ही पुराने जैसा बना हुआ नजर आ रहा है।

यहां बाहर की ओर आधी जगह में टाईल लगी हुई दिखाई दे रही है और आधी जगह में घास भी लगी हुई नजर --

यह किसी स्कूल के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जो की कैम्बिन्ज प्राइमरी स्कूल है।

और नीचे की ओर बहोत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ये किसी नदी की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बीचो बीच एक फुव्वारा चलता हुआ नजर आ रहा है।

बिल्डिंग की बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे एक बड़ा से काले कलर के --

ये किसी मस्जिद के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे मस्जिद का एक बोर्ड भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

और दरवाजे की बाहर की और कुछ लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और दरवाजा खुला --